यहां पर बहोत सारी मेज भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर लोहे की पाइप भी लगे हुए दिखाई--

पर ये स्नेक बार दिखाई दे रहा है इसका लोगो रेड कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर एक काउंटर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर--

स्टेडियम बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।

दे रही है यहां पर बहोत सारी मैज भी दिखाई--